एक आदमी गुम्मा भी धर रहा है गुम्मा भी दिखा रहे है हमको वह एक आदमी बी नाप रहा है गड्डा पे कुछ --